पर छत को आधे से ज्यादा ढलाई कर चुके हैं और--

और उसको देखने के लिए बहुत जाने आए हुए हैं।

यह एक सामुदायिक भवन है जोकि बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

किसी किसी के समान दिखाई दे रहे हैं।

जो की बहोत सुंदर दिख रही है और साथ ही नीचे में कुछ पेड़ पौधे भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

और साथ ही स्वीमिंग पूल के चारों तरफ एक बाउंड्री लगा हुआ हैं और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे दो बड़ी बड़ी बसें दिखाई दे रही हैं साथ मे ही कुछ लोग--

और अपनी अपनी किताबें खोलकर कुछ कुछ लिख रहे हैं।

और एक छोटी सी कार जो रोड में चलती है नजर आ रही है और साथ ही--

चित्र छाया बनाने का प्रारूप कर रहीं है और साथ ही बच्चे बहोत ही अच्छे तरह से प्रदर्शित कर रहे है।

जो की बहोत ही अच्छी तरह से उनको--

और कुछ पुरुष योग करते हुए नजर आ रहे--

और यहां पे लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग जूते दिखाई दे रहे है।

कुछ तारे एक छोर से दूसरी छोर की ओर जाते हुए नजर--

और उस स्तंभ में बहोत सारी लाइटे नीले रंग की सजी हुई दिखाई दे रही है जो बहोत ही सुंदर दिख --

खाने के लिए कुरकुरे और कुछ मीठे पान मसाले रखे गए हैं और सामने एक चाय की किटली है।

यह एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है जो की बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

जो कि बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है और इसमें--

बैंगनी रंग की और बहोत ही सुंदर सुंदर अलग अलग रंग की--

इस दुकान में बहोत सारे--

जहां पे कुछ लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

एक बड़ी सी टैंग लगी हुई है।

हॉल टाइप ऑफ सफा शेरवानी स्टॉ--

कतार कलांगी जूती सेहरा एति से बहोत सारी चीज मिलते है और सामने बहोत सारी सुंदर-सुंदर मुकुट दिख रही है और एक --

यह एक कॉफी शॉप है जहां पे--

सारे मजदूर आगे की ओर ठेकेदार की ओर--

सामने देखते हुए नजर आ रहे हैं।